यहाँ सामने एक बड़ी ही दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग अपना-अपना सामान बेचने के लिए बैठे हैं।

कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं ऑटो में कई लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहे--

और रास्ते में चारों तरफ हरियाली छै छायि हुई हैऔर नीचे पतली-पतली हरी दूबा दिखाई दे रही है।

यहां सामने एक मेंस पार्लर दिख रहा है।

यह एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है। मकान बहुत बड़ा लग रहा है।